इस फोटो में एक रूम को दिखाया गया है।

इस फोटो में हम एक यलो कलर के बड़े से बिल्डिंग को देख सकते है।

काफी सारे इलेक्ट्रिक वायर्स भी जा रहे हैं।

यहां पर काफी सारे फूल्स भी है।

इधर सामने हम कुछ घर और बिल्डिंग्स देख सकते हैं।

एक इलेक्ट्रिक पोल भी दिख रहा है।

ये बिल्डिंग काफी पुराना हो गया है।

इस बुक स्टॉल का नाम तेजा बुक स्टॉल है।

इस फोटो में हम एक घर देख सकते हैं।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

इन महिलाओं में अधिकतर महिला ऑरेंज कलर की साड़ी पहने हुए है।

यहां पर कुछ हम चेयर्स भी देख सकते हैं।

एक लोग बैठकर केला खा रहा है।

इस फोटो में हम एक चर्च को देख सकते हैं जो कि थोड़ी दूर हमें दिख रहा है।

यह फोटो एक बुद्धिस्ट टेंपल का है।

यहां के वाल पिलर्स पर काफी सारे स्क्रिप्चर्स बने हुए हैं।

तीनों बेड में एक कंबल और एक गद्दा और एक तकिया रखा हुआ है।

इस फोटो में हम एक वॉल देख सकते हैं।

यहां पर काफी सारे टॉवर्स भी देख रहे हैं।

यह फोटो एक मोबाइल रिपेयरिंग शॉप का है।

ये एक कपड़े की दुकान में रखा हुआ है।

और नदी को पार करने के लिए एक लंबा सा ब्रिज है।

यहां पर बड़े बड़े घड़ी से लेकर छोटे छोटे घड़ी भी है।